तीन आदमी यहां पे अपना लंच कर रहे हैं नहीं तो कुछ खा रहे हैं लोग।

जिस दी इस तस्वीर में एक व्यक्ति दिखाई दिया है जो कुछ पढ़ रहा है।

यहां पे कुशन लोग भी रखा हुआ है जो बैठ के बात किया जा सकता है पानी पिया जा सकता है।

और यहां अं इस पीपल ट्री के सामने कर लोग--

और ये बहुत सारा पत्थर है बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पत्थर है।

और ये सेल्स लोग में बहुत सारा किताब रखा हुआ है।

यह अभी नदी दिखाई दे रहा है मुझे जो बहोत बरा नदी है।